और फैन भी है लाइट भी जला हुआ है और बहुत सारा जूस भी मौजूद है।

टैंकी भी ब्लैक कलर के रखे हुए है एक बच्चे के साइकिल के खिलौने भी रखे हुए है।

बुक्स कवर करने वाला भी दिखाई दे रही है और कैलेंडर भी लटका के रखी है।

तस्वीर पर मुझे एक इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहा है दिखाई दे रही है जहां पर तीन इंसान मौजूद है।

तस्वीर पर मुझे दारु की दुकान दिखाई दे रही है इस दुकान पर बहुत सारा --

इस तस्वीर पर मुझे एक होटल दिखाई दे रही है और होटल की कलर है ग्रीन और वाइट कलर में और।

चार ठो चेयर मुझे दिखाई दे रही है और मुझे सुपरसीट भी दिखाई दे रही है।

खुला आसमान दिखाई दे रही है और पैर भी दिखाई दे रही है और बहुत सारा इंसान भी दिखाई दे रही है।

बुद्धा भगवान कि स्टेच्यू दिखाई दे रही है जो फ्लावर से सजाया गया है।

तस्वीर पर मुझे एक छोटा सा कॉटेज दिखाई दे रही है बरा बरा पत्थर भी दिखाई दे रही है।

फ्लावर का पेड़ भी दिखाई दे रही है और बड़ा बड़ा ग्रीन कलर का पेड़ भी दिखाई दे रही है।

तस्वीर पर मुझे एस_बी_आई का बैंक और फिर से ए_टी_एम दिखाई दे रही है और मुझे बहोत सारा बाइक और --

इस तस्वीर पर मुझे एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा दिखाई दे रही है बहुत सारा इंसान मौजूद है।

में आराम करके है और मुझे यहां पर बिस्किट दिखाई दे रही है और मुझे वहां पर--